जो की फ्लैग होस्ट किया गया है और यहां पास बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहां पास सामने हीरा वीज भंडार यहां पास धान गेंहू उडद तीली मूंग मक्का--

यहां पास मस्जिद भी दिखाई दे रहा है जो की एक अच्छी बात है और यहां पास--

जो कि इस नदी के अंदर उसमें कोशिश कर रहे हैं।